छत दिख रही है झंडे दिख रहे हैं बलून दिख रहे हैं फर्श दिख रही है।

खिड़कियां दिख रही हैं टेबल दिख रिया है बहुत सारी कुर्सी टेबल दिख रहे हैं।

बेड दिख रिये है पंखा दिख रियाहै लाइटें दिख रही हैं।

बोल दिख रही हैं बल्ले दिख रहे हैं।

लोग दिख रहे हैं बहुत सारे फूल दिख रहे हैं।

बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारे फूल दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे दुकान दिख रही है स्टूल दिख रिया है शटर दिख रिया है कारपेट दिख रिया है।

स्टूल दिख रिया है टेबल दिख रिया है आदमी दिख रिया है।

पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रिया है।

चेहरा दिख रहे रोड दिख रही हैं।

इस चित्र में मुझे भारतीय डाक पे बाघ दिख री है।

छतरी दिख रही है गाड़ी दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे रोड दिख रही है आसमान दिख रही है दुकान दिख रही है।

इस चित्र में मुझे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं बोरी दिख रही है टोकरियां दिख रही हैं दुकानें दिख रही हैं लोग दिख रहे हैं।

दुकान दिख रही है पी_ओ_पी दिख रही है कुर्सी टेबल दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे बादल दिख रिया है।

इस चित्र में मुझे बहुत सारे फ्लावर पोर्ट दिख रहे हैं।

आसमान दिख रहा है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तालाब दिख रहा है।

घास दिख रही है आसमान दिख रिया है।

लाल टमाटर दिख रहे हैं हरे टमाटर दिख रहे हैं बहुत सारे टमाटर दिख रहे हैं।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

इस चित्र में मुझे दीवार दिख रही है पर्दे दिख रहे हैं टी_वी दिख रही है।

इस चित्र में मुझे आसमान दिख रही है बिल्डिंगें दिख रही हैं।

इस चित्र में मुझे डिस्पोजल दिख रहे हैं कांच की बॉटल दिख रही हैं काउंटर दिख रहा है।